इस दृश्य में महात्मबुद्ध का प्रतिमा दिखाई गयी है और पास में तस्वीर है भीमराव अम्बेडकर जी की और --

इस दृश्य में एक मैदान दिखाया है जिसमे जिम मशीन से कई लोग जिम कर रहे है बच्चे जिम कर रहे है।

खिडकियाँ है और सड़क है और बहोत सारे लोग खड़े हुए है।

इस दृश्य में खदान को दिखाया है जिसमें बहुत सारे लोग है और लोग फ़ावडे से मिट्टी को खोद रहे हैं ।

इस दृश्य में दो संतरा आपको दिखाया गया है जिसमे बहुत सारे मेजो पर पड़ी हुई है और कुर्सीया भी हैं।

और मेज पर गुलाब का फूल है और जग है खिड़किया है खिड़कियों पर गिलास चढ़ा हुआ है।

इस दृश्य मे छत का निर्मान होते हुए दिखाया गया है जिसमे सरिया है और कर्मचारी है और अन्य लोग भी है।